और पीछे लाल कलर के फूल लगे हुए हैं एक छोटा सा मकान है।

खंभे लगे हुए हैं यहाँ पे छोटे-छोटे पोधे लगे हुए हैं गार्डन में हरी घास --

उन उनके आगे एक मशीन रखी हुई है बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है।

उसके आस-पास काफी गंदगी है।